यहां पर एक कैरेट है इस कैरेट पर पेपर लगा हुआ है और अंदर--

बिल्डिंग चार ताल की है और--

ए एक केक की दुकान है इस दुकान में बहुत सारे--

पर बहोत सारे कंज रखे हुए हैं और कुछ लोग उस पर काम भी कर रहे हैं।

और घर के ऊपर एक एंटीना --

ये एक दुकान है इस दुकान में--

और सभी गाड़िया का एल_सी_डी कैमेरा --

यहां पर एक स्टेज हे उस स्टेज पर --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

यहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा जमा हुए हैं और उनमें हैं।

और यहां बहुत सारी मशीन भी है.

एक ग्राउंड है जो बिल्कुल ही खाली है और सामने एक दरख्त भी है जो बहुत हरा भरा है.

यहां पर एक कपड़ों की दुकान है उस कपड़ों के दुकान में बहुत सारे--

यहां पर एक मुर्गा है उस मुर्गे के पंख--

फोर व्हीलर और टू व्हीलर खड़ी हुयी है.

और ऊपर लाइट चमक रही है और यहाँ दो-तीन आदमी भी है।

गुलाबी कलर की कुर्सियां रखी हुई है.

यहां पर एक सड़क है सड़क पर एक सफेद कलर की पट्टी है.

यहाँ पर एक कंप्यूटर है इस कंप्यूटर में वायर लगाई हुई है सामने एक साइकिल है।

टेबल के पास एक अलमारी है.

विवो के मोबाइल्स रखें हुए है और दुकान--

यहां पर बहुत सारा पानी है.

आदमी सेल्फी निकाल रहा है और एक आदमी मोबाइल देख रहा है.

वो अपनी सेल्फी आईने के सामने निकाल रहा--

और उसमें एक आदमी बैठा हुआ है और बहुत सारे--

ने गले के हार लटकाए हुए हैं और वहां पर एक औरत भी है.

यहां अनमोल दुकान के सामने चार बच्चे खड़े हुए हैं.

प्यारा डेकोरेशन किया हुआ है जिसमें कलरफुल बलूंस लगाए हुए हैं।

ये बहुत ही खाली है यहां पर अंदर पेड़ है जिस पर सफेद--

यहां पर रॉयल्स टैटू --